C में स्टैटिक मेंबर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक फंक्शन हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे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
प्रथम ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले स्टैटिक वेरिएबल्स ज़ीरो से इनिशिअलाइज़ किये जाने हैं
स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी पूरे प्रग्राम के लिए रहती है
सारे ऑब्जेक्ट्स उस वेरिएबल को शेयर करेंगे
प्रोग्राम के अंत तक यह मेमरी में रहेगा
स्टैटिक फंक्शंस किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर निर्भर हुए बिना ही स्टैटिक फंक्शन अपने आप कॉल हो सकता है
स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्लासनेम160 स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर और स्टैटिक फंक्शन प्रयोग करते हैं
अब स्टैटिक मेम्बर्स पर एक उदाहरण देखते हैं
मैंने पहले ही एडिटर पर एक कोड टाइप किया है
ध्यान दें हमारा फाइलनेम स्टैटिक डॉट सीपीप है
मैं अभी कोड समझाती हूँ
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है
यहाँ हम एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग कर रहे हैं
फिर हमारे पास क्लास स्टेटेक्स है
इसमें हमारे पास प्राइवेट की तरह घोषित एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स है
फिर हमारे पास पब्लिक की तरह घोषित एक स्टैटिक वेरिएबल सुम है
यह हमारा कंस्ट्रक्टर स्टेटेक्स है
इसमें हमारे पास बड़ा हुआ सुम है
फिर सुम की वैल्यू एक्स में संचित हुई है
यहाँ हमारे पास स्टैटिक फंक्शन सत है
इसमें हम सुम प्रिंट करते हैं
फिर हमारे पास फंक्शन नंबर है
यहाँ हम नंबर एक्स प्रिंट करते हैं
यहाँ क्लास बंद हुई है
स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबली घोषित करने के लिए हम स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर प्रयोग करते हैं
स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए निम्न की तरह लिखते हैं डेटाटाइप क्लासनेम स्कोप रिजोल्यूशन आपरेटर और स्टैटिक वेरिएबल नामे अब स्टोरेज वेरिएबल सुम को आवंटित हुआ है
यह 0 से इनिशिअलाइज़ हुआ है
यह हमारा मैन फंक्शन है
यहाँ हम क्लास स्टेटेक्स के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं
जैसे ओ1 ओ2 और ओ3 फिर हम ऑब्जेक्ट्स ओ1 ओ2 और ओ3 प्रयोग करके फंक्शन नंबर कॉल करते हैं
स्टैटिक फंक्शन स्टैट यहाँ एक्सेस हुआ है क्लास नामे और स्कोप रिजोल्यूशन आपरेटर प्रयोग करके
यहाँ हम स्टैटिक वेरिएबल सुम प्रिंट करते हैं
और यह रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज़ एकसाथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कम्पाइल करने के लिए टाइप करें gस्पेस स्टैटिक डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस स्टैट
एंटर दबाएं
टाइप करें stat डॉट स्लैश स्टैट एंटर दबाएं
आउटपुट में प्रदर्शित होता है नंबर is 0 1 2 रिजल्ट is 3 नोव स्टैटिक वर सुम इस 3 अब मैं आउटपुट समझाउंगी
मैं विंडो रीसाइज़ करती हूँ
यहाँ पहले नम्बर की वैल्यू 0 है यानि एक्स 0 है
पहला ऑब्जेक्ट वैल्यू 0 देता है
फिर हमारे पास वैल्यू 1 है यानि एक्स 1 दूसरा ऑब्जेक्ट वैल्यू 1 देता है
औए तीसरा ऑब्जेक्ट वैल्यू 2 देता है
फिर हम स्टैट फंक्शन कॉल करते हैं जो सुम की वैल्यू देता है
रिजल्ट इस सुम यहाँ सम बढ़ाया गया है और एक्स में संचित हुआ है
अतः यह वैल्यू 3 देगा
इसलिए हमारे पास आखिरी आउटपुट है स्टैटिक वर सुम इस 3 अब यहाँ ओ4 की तरह अन्य ऑब्जेक्ट बनाते हैं
मैं ऑब्जेक्ट ओ4 प्रयोग करके फंक्शन नंबर कॉल करुँगी
सेव पर क्लिक करें
अब निष्पादित करते हैं
एरो की को दो बार दबाएं
एरो की को दोबारा दो बार दबाएं
आप देख सकते हैं रिजल्ट इस 4 नोव स्टैटिक वर सुम इस 4 जैसे कि 4थ ऑब्जेक्ट बनाया गया है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
स्लाइड्स पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक वेरिएबल उदाहरण स्टैटिक इंट सुम स्टैटिक फंक्शन उदाहरण स्टैटिक वॉइड stat एक नियत कार्य में एक क्लास बनायें जो स्टैटिक वेरिएबल घोषित करे
वेरिएबल में कमी करें
और वैल्यू प्रिंट करें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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालोँ को प्रमाणपत्र देते हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद